यह भी काफी अच्छा नज़ारा है ठीक है।

और हाल है। ये जिसमे दो चार ठे फैन लगे हुए है वहाँ पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

नमकीन बिस्कुट चाय फिर कह लीजिये इसे ठीक है।

गुलाब के पेड़ और इत्यादी जैसे फसल भी लगी हुई हैं ठीक है भाई लोग।